और सामने एक साइड मे भी स्कूटी खड़ी की गई है जो सफ़ेद और नीले रंग की स्कूटी है बहुत सारे झाड है जो हरे रंग की पत्तिया है सफ़ेद और नीले रंग की आसमान है।

जो पीले रंग के हैं अगर बगल पेड़ पौधे लगाए गए जो हरे रंग के पत्ते हैं यह छत हैं जो रंगबिरंगी यहाँ है।

अगल बगल भी लोटे और घड़े रखे हुए है जो गोल्डेन कलर के है ऊपर के साइड पे पटेला रखा हुआ है जो सफ़ेद रंग की है।

यह सफेद और नारंग के आसमान है सामने अगर बगल बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

बड़ा सा गार्डन है। जो हरे रंग के सूखे रंग के घास उगे हुए हैं। बड़ा सा सामने पहाड़ है जो सफेद रंग के हैं नीले और सफेद नीले सफेद रंग के आसमान है। अगल-बगल पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

सामने एक बड़ा सा गेट है जो सफेद रंग की गेट है अगल-बगल चबूतरा बनाए गए हैं जो भूरे रंग के है ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें नाम लिखी हुई है।